तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां मुझे कुछ पुरुष दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे कुछ अलमारी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मुझे रोड दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दिखाई दे--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

इस तस्वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रही--

इस तस्वीर में मुझे एक छुहारा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पाइप दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ सजावट दिखा--

इस तस्वीर में मुझे कुछ बॉटल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ दुकान दिखाई--

यहां मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे--